बहुत सारी नदियां भी और पानी भी दिख रहा है बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख--

दिख रहा है यहां पर बहोत सारी लाइटे भी जल रही है ऊपर खुला और काला आसमान--

और यहां पर एक पाइप भी पड़ा हुआ है यह दिन का है।

और बहोत बड़ी-बड़ी झाड़ें भी दिख रही है और घांसे भी दिख रही है ये खुला आसमान दिख रहा है।